यहाँ पे दो जेंट्स खड़े हुए हैं एक जेंट्स पलंग पे लेटे हुए हैं।

यह मंदिर है एक बड़ा सा विशाल मंदिर है।

मॉल में बोर्ड लगे हुए है उपर लाइटिंग लगी हुई है।

छोटे-छोटे पोधें हैं उनमें गार्डन में छोटी-छोटी घास हैँ पेड़ के नीचे पत्ते पड़े हुए ह --

यहाँ पे कुछ म मकान है मकानों में नीचे दुकाने है दुकानों में सटर लगे हुई है।

कुछ लोग रस्सी पकड़े हुए है एक फावड़ा रखे हुए--

आस-पास धुल मिट्टी है छोटी-छोटी घांस है नदी पानी से भरी हुई है नदी पे--

आस-पास बड़े-बड़े पेड़ है कुछ छोटे-छोटे पौधे है पेड़ो के नीचे परछाई दिखाई दे रही है।

कुछ कुर्सियाँ राखी हुई है एक गाडी रखी हुई है।

एक छत पे कुछ सामान रखा हुआ है।

यहाँ पे एक शोरूम है उसके बाहर एक कार खड़ी हुई है।

दीवारों के पीछे पेड़ हैं आगे पौधे लगे हुएं हैं पेड़ में फुल लगे हुए हैं ।

कुछ साड़ियाँ रखी हुई है कप्बर्ड बने हुए है।

कमरों में लाइटे लगी हुईं हैं छोटे-छोटे पौधे है।

कुछ पेड़ है छोटे-छोटे पौधे हैं एक बोर्ड लगा हुआ है सड़क पे गड्ढो में पानी भरा हुआ है।

यहाँ पे रोड है रोड पे गाड़ियाँ चल रहीं हैं ऑटो हैं कुछ--